बोहत बड़ा हॉल दिख रहा है जहाँ पर जो है फ्लावर्स दिख रहे है जो बेचने के लिए रखे गए है और स्पेशली फ्लावर्स का शॉप है पौट्टस भी वहाँ पर सेल किआ जाता है ब्लैक एंड वाइट काफी वहां पर बक्से दिख रही हैं। जो ब्राउन --

यहाँ पर काफी बड़ा रस्ता दिख रहा है जहाँ पर काफी कार्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सफेद रंग की कार है सभी और काफी लाइटिंग से वहाँ पर रोशनी दिख रही है।